नाइ के ऊपर दो व्यक्ति भी बैठे हुए है सूरज और आसमान भी दिख रहा है बोहोत सारे पेड़ दिख रहे है।